और जरा गौर से हमे देखंगे तो काफी सारे लोग कतार में खड़े है दवाइयां खरीदने के लिए या दवाइयां लेने के लिए और ऊपर से हलकी सी झलकी हमें एक पेड़ की भी नजर आ रही हैं।

यह तस्वीर एक पहाड़ी की है जिसमे एक व्यक्ति हरी टीशर्ट पेहन कर चश्मा लगा कर पहाड़ी का सहारा लेकर फोटो के पोज़ में खड़ा है।

और काफी सारे व्यक्ति लाल कपड़ो में पहनकर एक पुजारी का भेष लिए हुए हैं और एक बच्चा भी उनके साथ खड़ा है।

यहाँ हम देख सकते हैं कि एक रेड कारपेट के ऊपर बहुत सारी मछलियों को रखा गया है और एक क्रेट के अंदर भी मछलियों को रखा गया है एक व्यक्ति बैठा है और उसके पास तराजू है उसमें तोल कर मछलियों को बेचता है।

ये ऐक चिकन और मछलीयों की दुकान है यहां पर सुमंद्री मछलीया और नदीयों की मछलीयां भी मिलती है और जेसा की इनके बोर्ड पर लिखा गया है की यहां पर ब्याह और शादीयों के ऑर्डर भी बुक किये जाते है और होटल के अंदर भी इनका सामान जाता है।

जरूरत नहीं पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी से इन्हें चार्ज कर कर और हमें इन्हें काफी दूरी तक चला सकते हैं हम इनको।

इस तस्वीर में व्यक्ति के पीछे हमें एक नाव देखने को मिल रही है नाव समुद्री जहाजो का एक छोटा रूप है और समुद्री जहाज जैसा कि हमें मालूम है की सबसे सस्ता माध्यम है वो यातायात का और कोई भी चीज अगर अपने को ट्रांसपोर्टेशन करना है --

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं की किस प्रकार से कुछ व्यक्ति गाड़ी के अंदर गट्टू को लोड कर रहे हैं और इन गट्टो में मिनिमम पच्चास किलो वजन तो होगा है और इससे हम देख सकते है की --

हम जाकर अपनों से बातचीत कर सकते हैं हम वहां पर जान जाकर डिनर इंजॉय कर सकते हैं लंच इंजॉय कर सक--